की यहा पे डांस कर रही है जिसने यहा पे डेर कलर का यहा पे लहंगा पहना हे और इसने ब्लेक कलर की पेंट पहनी है।

यह कोई जिम की तस्वीर है| जहा पे एक लड्का यहा पे एकसेरसाइज़ कर रहा है | यहा पे दुम्ब्लस रखे हुए है यहा पे बहोत सारे जिम के एकवेपमेंट रखे हुए है यहा पे जिम का कलर पिक येल्लो ग्रीन है।